इलाका का लोग बस पकड़ने के लिए और जाने के लिए इहाँ ही आते हैं। इहाँ से गाड़ी पकड़ कर लोग जाता हैं।

ये हमारे इलाका का एक सैलून है। ये सैलून बहोत ही बड़ा है। यहाँ पे बहोत अच्छी से हेयर कटिंग किया जाता है।

इस वाटर पार्क के अंदर ढ़ेर सारे स्विमिंग पूल्स हैं।

ये मीटिंग रूम बोहोत ही साफ सुथरा है।

इलाका का लोग रेल लाइन क्रॉस करने के लिए इस ओवर ब्रिज का यूज करता हैं।

इस लेक का पानी बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ पर लेक के पास हर बक्त सड़क से लोग गुजरता है।